इसमें एक आयकर सेवा केंद्र जगदलपुर दिखाई दे रहा है और एक गांधी जी की तस्वीर दिखाई दे रही है ।

इस इमेज में दो मकान एक बड़ी सी पौधों की बगिया दिखाई दे रही हैं और वही पर एक औरत पौधों को पानी देते नज़र आ रही है।

इस इमेज में एक डी.एस.पी सोडा एंड कॉफ़ी शॉप है जिसमें तीन लोग बैठे हुए नाश्ता करते हुए नजर आ रहे हैं।

फ़ूड ट्रैक का पोस्टर लगा हुआ है और आगे कुछ लोग नज़र आ रहे है कुछ गाड़ियाँ और रिक्शे भी दिखाई दे रहे है।

लाइट्स के खंम्बे दिखाई दे रहे है साइकिल गाड़ी दुकान नजर आ रही है।

इस इमेज में छः मज़दूर छत का कार्य करते हुई दिखाई दे रहे है और बहुत से मकान नज़र आ रहे है कुछ पेड़ पैधे भी दिखाई दे रहे है।

इस इमेज मे हमे एक छोटा-सा तालाब दिखाई दे रहा है और बहुत से पेड़-पौधे नजर आ रहै है।